तो लंबा लंबा पाया है इसके आसपास पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक तालाब है तालाब में बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे पाए बनाए हुए हैं।

इसमें गुब्बारा लगा हुआ है।

यहां पे इंट लगाया हुआ है।

ये आदमी व्हाइट कलर की पहना हुआ है।

बड़ा सा दुकान है यहां पे बहुत सारे बोड़ा है इसमें सीमेंट है।